दो औरतें एक आदमी है एक बच्ची है जोकि माता रानी का--

चारों तरफ पेड़ पौधा है बिजली का तार है।